जिसमें बांस की लगता है अभी मरम्मत करवा रहा है घर को तीन चारगो एगो हैं।

इसमें तीन ठो बैगनी और गुलाब रखा है। लाइट बत्ती एथे सजावट तो बढ़िया है। --

जो मर्दाना खड़े हैं सब वो बगल में वो छुर-छुरी पड़ाका जो उड़ा रहे हैं और एक लड़का है वाइट शर्ट पे काला पैंट में ये सब वाइट वाइट सुन्नी हैं उधर लड़क लड़की लग रहा है और वो --

बहुत एंटीना भी लगा हुआ है टी.वी. इवी भी देख सकते है आइए --

बहुत ही लगी हैं वो जो खाना है उसको एक चारा मिला है हरा है और उम घास है कुछ कुछ कुट्टी भी काट के दिया है इसको लग रहा है।

नीचे और हैं रूम गोल्डन कलर की और उ वे कुछ फूलों की सजाव सजावट वजावट वैगरह तार-उर की सब कुछ ख --

यह ग्राउन्ड है ग्राउन्ड में क्रिकेट खेला जा रहा है कोच ने गेंद फेंक रहा है फ्री हिट मांग रहा है इधर उधर खड़ा हैं और कोच ने गेंद बहुत ही खतरनाक डाली है गेम उम है।

यहां फर्नीचर रखे हैं वगैरा-वगैरा समान उमान है घूम सकते हैं लैपटॉप उपटॉप बगल उगल में हैं घूम के वह खिड़की --

घूमने के भी खाने के बैठ के रेस्टोरेंट है।